इस चितर में क्लब का माहौल दिखाई दे रहा है।

रेक जीज्जा ऑटो रिक्शा का शोरूम है।

जे एक बगीचा अर कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं।

इ पोस्टर लगे हैं उसपे लिखा है यू.पी.एस.सी नोट्स ।